यहाँ पे ये बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं। ये लोग है बहोत सारे पेड़ है यहाँ पे सड़क है जाने वाला रास्ता हैबा है।

यहां पे आगे लगा हुआ है इस पे कुछ पोस्टर पे कुछ छपा हुआ है इस पे कुछ दिख रहा है लिखा है। यहां पे एक लोग खड़ा है यहां पे मेज पड़ी हैं यहां पे चेयर पड़ी हैं । यहां पे बोहत सारे सिक्के हैं ।

बहोत सारी मछलियां भी है सब तरह -तरह की मछलियां तरह-तरह की मछलिया हैं। गिमछे भी है अरे हैं यहाँ पे ये बहोत लोग काट के दे रहे हैं। बहोत --